और यहां एक गाड़ी भी खड़ी दिखाई दे रही है बहोत सुंदर नजारा--

और यहां सब बैठके आ--

और यह नीला नीला एक तौलने का तराजू है।

तेरा है यहां बहोत सारी औरतें भाषण कर रहे हैं बहोत सुंदर नजारा देख रहा है।

यहां बहुत सुंदर नजारा दिख रहा है।

सब आप अपने कंप्यूटरों में काम कर रहे हैं।

बहोत सारी कुर्सिया भी बिछी हुई है।

कर रहे हैं बोहोत बड़ा और हाल दिखाई--

और कुछ बैठे हैं यह बस स्टॉप नजर आ रहा है।

यहां इस घर में दो तीन भैसे भी बंधी हुई है और ये भैसे बहोत सुंदर दूध--

यहां लड़के लड़के की शादियां--

और पार्क भी बोहोत सुंदर दिखाई दे--